यहां एक स्टेज है स्टेज पर एक सोफा लगा हुआ हैं।

यहां पर बहुत सारी चीजों की--

और यहां पोस्टर भी लगे हुएं हैं सामने मोबाइल रखे हुएं है और लाइट भी जगी हुईं हैं।

हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीश प्रणाम लिखा हुआ है।

सामने एक शीशा भी रखा हुआ है।

टेबल पर कुछ और भी सामान पड़ा हुआ है।

अंदर कुछ सामान रखा हुआ है और यहां और भी चीज--

ये एक कपड़ों की दुकान है यहां कपड़ों की सेल लगी हुई है।

सामने दरवाजे भी दिख रहे है।

यहां एक घर का काम लगा हुआ है घर की छत के ऊपर शटरिंग के फट्टे डाले हुए हैं।

यहां एक कैंप लगा हुआ है बहोत सारे डॉक्टर नर्स यहां बैठे हुए हैं टेबल पर हरा कपड़ा बिछा हुआ है।